मैदान है मैदान पूरा खुला है आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े वृक्ष लगे है और मैदान में थोड़ा सा कहीं पानी भी है और मैदान पूरा हरा-भरा है पूरा आस-पास वृक्ष है बड़े-बड़े जंगल भी हैं।

मंदिर है और मंदिर काफी अच्छे से सजाया गया है लग रहा है इस मंदिर में कुछ आयोजन होने वाला है।

--दिन की तस्वीरे है और इसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं बहुत-सारे एक्सरसाइज करने की जो है यहां पे लगाया गया है और ये पार्क जो है काफी अच्छा है।